पास में एक छत बनी हुई दिखाई दे रही है एक झोपड़ी दिखाई दे रही है एक सड़क दिखाई दे रही है जिसपर मिट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा--

एक अलमारी रखी हुई दिखाई दे रही है जिसके ऊपर टॉवल टंगा हुआ दिखाई दे रहा है बाहर कुछ फूल दिखाई दे रहै है फूलों का रंग पीला दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर एक हार्ट शेप के बैलून दिखाई दे रहे है हार्ट शेप बैलून के आगे एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है और उसने अपने सर पर हरी टोपी लगा रखी है।

होटल पर एक बोर्ड लगा हुआ है होटल पर बाहर की ओर बोर्ड लगा हुआ है जो की नीले कलर का है जिसपर ब्लू डायमंड द होटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ट्री लिखा हुआ दिखाई दे रहा है काँच का गेट दिखा दे रहा है गेट पर बैलून लगे हुए दिखाई दे रहै है बैलून के ऊपर मालाएँ टंगी हुई दिखाई दे रही है हरे रंग का कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

सैलून लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सैलून के आगे एक कुर्सी रखी हुई हैं कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ हैं आदमी ने पर्पल कलर की शर्ट --

यहाँ पर एक बड़ा ऐसा रूम दिखा दे रहा है रूम में काफी सारे लोग बैठे हुए जो दे रहे हैं बेंचे रखी हुई दिखाई दे रही है जोकि काफी बड़ी-बड़ी दिखाई दे रही है।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

खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसने चश्मा पहना हुआ है पास में कोई एक और आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है कुर्सीया लगी हुई दिखाई दे रही है।